यह चित्र एक ऑटो रिक्शा का चित्र है सफेद रंग का नया ऑटो दिखाई दे रहा है ।

ये एक सिनेमा हॉल का चित्र है।

कुछ दो पहिया वाहन दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद रंग की एक्टीबा दिखाई दे रही है।

शेर दिखाई दे रहा है दुर्गा माँ के सर पर बड़ा सा मुकुट दिखाई दे रहा है।

एक युवक नीले रंग की शर्ट पहने दिखाई दे रहा है एक लाल रंग की शर्ट में दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में प्राची कोचिंग संस्था का बोर्ड दिखाई दे रहा है नीले रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

नीले रंग का कचरे का डब्बा दिखाई दे रहा है।

साथ में त्रिशूल दिखाई दे रहा है उनके साथ एक और मूर्ति दिखाई दे रही--

यह एक इमारत का चित्र है इसमें दुकान दिखाई दे रही है ।

टेबेल दिखाई दे रही हे टेबल पर रखी पुस्तिका दिखाई दे रही हे।